बस सब खड़े हुए है यहाँ पे बस आप देख सकते है यहाँ पे बहुत चेक तरह के बस खड़े हुए है जो की--

यह देखने से ही ये मुझे कहीं यहाँ पे क्या ये लग रहा है एकदम लगता है कोई फेक्ट्री है फेक्ट्री में सारे वर्कर्स को यहाँ पे काम समझाने के लिए बुलाया गया हैये यहाँ पे--

यह कोई यहाँ बेडरूम लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर एक बिस्तर लगाये गए है बिस्तर के उपर एक लाल चादर भी ओढ़ी गई है तीन तकिये भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे बड़ा रखा हुआ है पेट्रोल पंप जोकि अभी लगता हैनया नया बनके रेडी हुआ है यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नजर नही आ रही है सिर्फ दो पेट्रोल पंप के--

पेड़ो के बीचो में एक छोटा सा बाग भी बनाया गया है बागो के लिए एक बाउंड्री भी बनाई गई है।